और क क कलर सफ़ेद है

सामने में देखा और इसमे कपडा लगा हुआ है कपड़ो मे कलर नीला है सफ़ेद है बिच मे बेंच लगा हुआ है और उसमे कपडा डला है और लाल है और सफ़ेद है

आ यहाँ पे एक दुकान है और जहाँ पे किताबे रखेंगे बहुत सारी और एक गेट लगा हुआ है सीसे का इस कारन सफ़ेद है अंदर लाइट लगी हुई है उस कारन सफ़ेद है

कांच कांच का उसका रंग सफेद है और गुब्बारे लगे हुए हैं जिनका जिनका रंग काला है